यहां एक टेबल है उस पे बहुत से--

यहां एक बहोत बड़ी नदी--

यहां दो तीन बाइक्स रखे हुए हैं।

कास व्हाइट कलर का है।

जहां एक रेड कलर का--

सभी दुकानें पर लाइट्स जगमग कर रही है।